और के लाइट रखा हुआ है और हरा -हरा कलर का ठंडा है ।

और सूरज है बहुत सारा आदमी है बहुत बड़ा फील्ड है।